यह एक मेला का दृश्य यहाँ पर हम लोग देख रहे है जहाँ पैर ब्रेक डांस लगा हुआ है और बच्चे के खेल ने लिए भी जुला है।

पूरा ग्राउंड एकदम हरा-भरा है एकदम सुंदर नजारा दिख रहा है।

यह एक एनबीबीडिसीएल का ऑफिस दिख रहा है।

वगैरा जमा यहाँ पर कर रहें होंगे। कुछ फेन लगे हुए हैं पंखा --

ये हम डाक घर डाकघर का फोटो देख सकते हैं।

बहोत ही अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। यहां पर कबाब वगैरा आपलोग आकर खा सकते हैं।